यहां पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है। जिसके ऊपर एक गिलास बंधा हुआ है और ओयो लिखा हुआ है। यहां पर वॉल के ऊपर एक कॉलम दिखाई दे रहा है और यह देखने में अच्छा लग रहा है।

बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। आसमान बिल्कुल खुला साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। यह दृश्य देखने पर बोहोत ही अच्छा लग रहा है। खेतो में कुछ फूल जैसी फसल दिखाई दे रही है।

यह फोटो में मुझे एक दुकान दिखाईं दे रही है दुकान में बहुत सारी सीमेन्ट रखी हुए दिखाई दे रही है और कुछ लोग बाहर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दुकान का कलर मुझे --

और दुकानों के बहार मुझे डमी खड़ी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक बोर्ड --

फोटो में मुझे गार्डन दिखाई दे रहा है। गार्डन में मूर्ति रखी हुई हे और यहाँ पे मूर्ति अलग अलग दिखाई दे रही है।